यहा पर गोल चबूतरे जैसा आकार है जिस मे किसी की मूर्ति है जिस मंदिर नुमा डिजाइन से सजाया गया है।

जो काफी बड़ी लग रही है और बीच मे एक आँगन है इसके चारों तरफ घर है।

यहाँ पर एक महा पुरुष की मूर्ति लगी है जिस मे फूलों की माला चड़ाई गई है ।

और उसके पीछे एक बड़ा सा पेड़ है सामने एक इंसान फोटो खिचवा रहा है ।

उसके दो पैर हैं आँखे खुली हुई हैं और एक कान दिख रहा है सामने और बहुत प्यारा बैठा हुआ है।

यहाँ एक बिल्डिंग में दो मजदूर लगे हुए हैं और उन्होंने अपने हाथ में हथोड़ी ले रखा है।

यहाँ एक स्टेज है स्टेज मे एक वीणा ले के बैठे हैं और एक ढोलक बजा रहे हैं एक माइक के सामने गाने का प्रयास कर रहे हैं।

और उसमें तीन चार लोग खड़े हैं और कुछ इसमें बैठे हुए हैं और बिल्डिंग ऐसा लग रहा है कि यह कोई बैंक है। बैंक के सामने कुछ लोग खड़े हैं।

और उसके पीछे बड़े - बड़े झड़ियां दिख रही हैं और पीछे ऊपर आसमान दिख रहा है जिसमे सफेद कलर के बादल छाए हुए हैं बहुत ही आकर्षक दिख रहा है ।

यहाँ पर माता जी को सजाया गया है और बहुत सारे लोग है काफी भीड़ - भाड़ वाली जगह है ।

यहाँ पर कुछ गमले दिख रहे हैं जिस मे अलग-अलग पेड़ लगाए हुए हैं।

जिस मे कुछ ज्वेलरी रखी हुई है और उसमे छोटे-छोटे ताले लगे हुए हैं ताला बंद पड़ा है ।

और उसके नीचे कुछ लोग दिख रहे हैं और पेट्रोल पम्प के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है।

यहाँ पर एक खूब सूंदर जंगल का नज़रा है इसमे कुछ पर्यटक इधर-उधर घूमते नजर आ रहे हैं।

पीछे बहुत ही प्यारा कलर दिख रहा है आसमान का जो हल्के नीले और हल्के हरे कलर का है और बहुत मनोरंगस है।

खंभों में कुछ हर कलर के बैलून लगाए जा रहे हैं लग रहा है यह किसी उद्घाटन का समारोह चल रहा है।